इस मेज में हमे बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहें हैं और इन गड्ढों में पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सफेद कलर का एक रुमाल डला--

और यहाँ ये दिवाले है ये दिवालो का कलर मेहरून है एक गेट लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं ।

शाम का समय है सूर्य डूब चुका हैं।

इस इमेज में हमे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और मिट्टी भी दिखाई दे रही है और दो आदमी खड़े हुए--